स्टेज के पीछे पेड़ दिखाई--

सामने कुर्सियां दिखाई दे रही है।

उस होटल पर नटराज पैलेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक छाता दिखाई दे रहा है।

टेबल पर बहुत सारा सामान दिखा--

इस फोटो में एक रिक्शा दिखाई दे रहा है।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

उस दुकान में फिनायल की बोतले दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बैंक दिखाई दे रही है।

उस मकान पर कलर वाली लाइट दिखाई--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

उस क्लास में बहुत सारे आदमी बैठे दिखाई--

इस फोटो में एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

उस दुकान पर फूलों की माला दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।